ये होटल इतिहास है बड़ी-सी है जो की कांच की बनी है यहाँ पर पानी का झरना टाइप बनाई है।

आस-पास और घर बने है गेट लगी खिड़कियां लगी है लाइट जल रही है अंदर पंखे वगैरा लगे है।

नाम से बेल बोर्ड लगा है। एक इन्श्योरेन्स एक्स्प्रेस के नाम से बोर्ड लगा है।

जे बी सी मशीन खड़ी है उनमे दो टायर लगे हैं रेड और ग्रे कलर की वहाँ दो ट्रेक्टर खड़े हैं एक येलो ग्रीन कलर का एक ब्लू और ब्लैक का।

यहाँ येलो कलर की एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी है यहाँ पर जाली वाला गेट लगे है उनमें बहुत सारी जाली लगी है और अंदर एक सोफ लगा है क्रीम कलर का गेट लगा है अन्दर खिड़कियां लगी हैं--

पेट्रोल पम्प है। यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रक खड़ा है रेड कलर का और उसके पास दो जैंट्स खड़े हैं एक जो टायर के नीचे रखे हुए हैं कुछ --

काम कर रहे हैं और यहाँ आस-पास पेट्रोल पम्प के पेड़ लगे हुए हैं मशीने लगीं हैं। पेट्रोल --

का है बड़ी-बड़ी मशीने लगी है ब्लैक कलर की और यहाँ पर इसके दीवार ब्लू और व्हाइट कलर की है यहां पर एक परदे लगे हैं और ये खिड़की है लाइटें लगी है।

ग्राउंड है यहाँ पर रात का टाइम है यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइटें जल रही हैं चारो तरफ से और यहां ये स्टेडियम है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं लड़के।